लटकी हुई नज़र आ रहीं हैं।

यहाँ बहु सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

उस बेंच में वो ड्रॉइंग शीट --

जिसमे एक गार्ड और एक आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

का नाम एम्एम्सी मेडिकल स्टोर है।

और ये चित्र एक एटीएम् का है।

यह चित्र एक शहरी एरिया का है यह चित्र --

एक एच.डी.ऍफ़.सी. बैंक का है इसमें सामने --